इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा घर है उजाला पेंट से पेंट हुआ है दीवार में कुछ लिखा गया है।

बहुत सारा आदमी है एक गाड़ी के ऊपर चघल है इधर एक टेबुल पर बैठल है।

इस चित्र में दिख रहा ये बहोत बड़ा घर है पीला कलन से पेंट हुआ है।

बहोत अच्छा है दिखने में इधर पे एक तार गया है।

पेंट करा दीवार ऊपर घड़ी है।

क्रिकेट का डबल गया है दीवाल।

वॉलीबॉल खेल रहे हैं उधर पानी बोतल है कुर्सी है।

झंडा लगा हुआ गया है इधर रंगोली कर रहा है आदमीन ।

दो ठो आदमी हैं और चरक शर्ट पहने हैं और चरक जूत जूता पहने हैं।

बहुत सारा दुकान है यहां पे गाड़ी लगल है और एक आदमी ने लूंगी पहना है।

यहां पे एक आदमी फोटो घिंच फोटो घिंचा रहा है और अगल बगल गमला में बहुत सारा घांस है।

ये कुर्सी है ग्रे कर का --

इसमें दिखाई दे रहा है कि एक लाल कलर का कप कप में चाह है।

एक ये पन्नी फ़ेकल गया है बहुत अच्छा है देखने में।

और एक कुर्सी है पीला बल्ब बर रहा है।

चित्र में दिखाई दे रहा है कि दो ठो भाठा है।

इस चित्र में दिखाया जाए की बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

पिंक कलर का पेंट हुआ है दीवाल पेंट हुआ है नीचे भी पेंट हुआ है।

जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो एक बड़ा इस्कूल है स्कूल के बाहर बहुत सारा आदमी है।

बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में उधर पोस्टर है छापल।

चित्र में दिखाई गया है कि एक रूम है रूम के अंदर रंग बिरंग का बैलून है।

पेंट हुआ है दीवाल टेबल पर रखा गया है बहुत अच्छा है।

आदमी कपड़ा पहने हैं लेडीज हैं मर्दाना हैं।

बाहर पेड़ है बहुत अच्छा लग रहा है एक लड़की चरक जर्सी पहनी है